वहाँ पर कुछ व्यक्ति खड़े दिखाई दे रहे हैं औरत भी खड़--

यहाँ पर हमे एक राजाओं के ज़माने का पुराना खंडर सा दिखाई दे रहा है जोकि किला बना हुआ है बोहत ही पुराना किला बना हुआ दिखाई दे रहा है जिस जिसके अंदर जाने के लिए एक बड़ा दरवाजा बना हुआ है।

--और अम्म्मम्म उसके दरवाजे के अंदर जाने के लिए बोहत सा ज्यादा सीढ़िया बनी हुई दिखाई दे रही है और वहाँ पर एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जोकि पिली कलर की शर्ट पहने हुए उसके अंदर जा रहा है।

उम दवाइयाँ रखी हुई दिखाई दे रही है औ अमम और एक टेबल पर बहोत सारे कागज रखे हुए दिखाई दे रहे है कुर्सियों पर कुछ व्यक्ति बैठे हुए दिखाई दे रहे है वहाँ पर एक औरत दिखाई दे --

पर हमें एक मकान बना हुआ दिखाई दे रहा है जो की बहोत बड़ बड़ी बिल्डिंग बानी हुई दिखाई दे रही है उस पर बहोत ज्यादा डालनी बानी हुई है और उस पर सफेद कलर का पेंट है जो भी बहुत ही सुंदर लग रहा है कुछ पीले कलर की खिड़कियों में भी पुता हुआ दिखाई दे रहा है। और --